कोई मैरून कलर का है कोई ब्ल्यू कलर का है कोई सेल्टिक कलर का है कोई ब्लैक कलर का है।

जो ब्लैक कलर की है। सब भगवान की है कुछ बड़ी मूर्तियां भी है कुछ छोटी मूर्तियां भी हैं इसमें से कोई गणेश जी की है कोई राधा-किशन की है।

और फूलों का कलर भी अलग अलग है कुछ का येलो है कुछ का ग्रीन है कुछ का ब्ल्यू है।

यह एक ऑफिस का रूम है जिसमें एक लड़का चेयर पर बैठा है।

जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है वह ब्लू कलर की चेयर पे बैठा है और उसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पेंट --

यह एक मिठाई की दुकान का दृश्य है।

और अंदर मिठाइयां रखी हुई है मिठाइयां अलग अलग कलर के अलग अलग डिजाइन की हैं।

ये दृश्य एक जंगल का है जहां से उ जहां ऊंचाई पे से बहुत तेजी से पानी गिर रहा है।

और जिम की मशीनों का कलर भी येलो और ब्लैक दिख रहा है।

यहां पर एक लड़का खड़ा है जो किसी दुकान के आगे हैं।

उसने जैकेट पहन रखी है ब्राउन कलर की और चश्मा भी ब्राउन कलर का लगा रखा।

यह एक तालाब का दृश्य है जहां से कुछ लोग मच्छी पकड़ रहे हैं।

उसे क्रिएट का कलर ऑरेंज है और कुछ मच्छी--

अ कुछ झालर भी लगाई हुईं हैं जो जो भी येलो और रेड कलर की हैं।

बिल्डिंग बनी हुई है जहां पर एक लड़का जा रहा है।

जो अकेला है उसने येलो कलर की शर्ट पहन रखी है।

कुछ लड़के जिम कर रहे हैं और कुछ लड़के ऐसे खड़े हैं।

यही जेसीवि मशीन है जो जिससे गड्ढा खोदा जाता है।

बच्चों किसी सड़क पर गहरा गड्ढा खोद रही है खाली जगह पर गड्ढा खोद रही है।

उनके आगे रंगोली बनी हुई है जो कलरफुल --

और ऊपर एक लाइट लगी हुई है और नीचे ब्लू कलर की बाल्टी रखी है।

कई कलर का दिख रहा है पीछे काफी दूरी पर पहाड़ और बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पर कुछ मिस मिस्त्री काम कर रहें हैं।

और कोई मालगाड़ी जा रही है जिस पे कुछ माल लगा है जो जो माल लोहे का--

ये रेड येलो ग्रीन प्रकार के दिख रहे हैं और एक बड़ा झूला भी दिख रहा है जो रेड और व्हाइट कलर का है।

जो रेड ग्रीन येलो दिख रहे हैं और--

और जो शेविंग कर रहा है उसने मैरून कलर की शर्ट पहन रखी है और चश्मा भी लगा रखा है।

ये गाड़ी खड़ी करने का एक गेराज है जिसमें बहोत सारी--

खाली जगह पड़ी हुई है जहां पर पेड़ लगा हुआ है।